कुछ अ अ झूले हैं और कुछ फिसलने के लिए है और यहाँ पर हमे अ पानी भी दिख रहा है।

और मैगी और कुरकुरे बिस्कुट के पैकेट दिख रहें हैं और हमें यहाँ लाइट के तार दिखाई दे रहे हैं।

बाहर हरे कलर की घास भी दिख रही हैं। आसमान दिखाई दे रहा हैं जो स्काई ब्लू कलर का हैं और अब आसमान में बादल भी --

ये कंकड़ पत्थर भी यहाँ हमे दिख रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा है जो स्काई ब्लू कलर का --